पेपर नजर आ रहा है कागज नजर आ रहा है। दिवरे नजर आ--

हेल्मेट नज़र आ रहा है। कार्टून नज़र आ रहे है। पूठा नज़र आ रहा है। और तार नज़र आ रहा है। एक बेंच नज़र आ रहा है।

बहुत सारे पत्ते नजर आ रहे है पेड़ नजर आ रहा है पौधे नजर आ रहे--